और दूर मै एक टावर जैसे दू दिखाई दे रहा है बड़ा-बड़ा और कुछ उधर घर भी दिखाई दे रहे हैं और कुछ पेड़ पौधे भी उधर साइड में दिखाई दे --

घर जैसे दिखाई दे रहा है और इधर एक बाइक भी खड़ा दिखाई दे रहा --

यहाँ पे एक कार लगी हुई है वाइट कलर की और एक जेंट्स इस कार को आगे के हिस्से को खोले --

और इस साइड में पेड़ के पास मे सीढ़ी के पास मे एक बुजुर्ग आदमी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं | घर के पीछे मे कुछ घर दिखाई

यहाँ सामने में गेस्ट हाउस जैसे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बहोत सारे मशीने रखे हुए बेलेक और पीला कलर में है।

पीछे में सर लोग भी दिखाई दे रहे हैं उधर सामने में आसमानी कलर की साड़ी पेहन के ल लेडीज भी खड़ी --

बहोत सारे लड़के लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं। आगे कुछ पत्थर का टुका - टुका दिख रहा --

और उपर में कुछ वाइट वाइट सा अजीबसा दिखाई दे रहा है। पोस्टर भी लगा हुआ जिसपे संयुक्त संबोधन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहाँ सामने में एक ऑटो दिखाई दे रहा है। ये ऑटो ब्लू कलर और ब्लैक कलर में दिखाई दे रही है।

और ऊपर मे पेड़ जमा हुआ है | कुछ पानी दिखाई दे रहे हैं | सामने मे कुछ ईटा पत्थर दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे --

उसपे ये लोग बैठ के खेल रहे हैं और साइड में एक जेंट्स दिखाई दे रहे हैं जो ऊपर में --

कुछ मंदिर वगैरा भी बन रहे हैं | शायद ये भी दिखाई दे रहे हैं | कुछ पीछे मे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे है | बड़े और छोटे पेड़ पौधे --

और ऊपर में कुछ घर जैसे भी वाइट कलर का दिख रहा है। जहाँ पे दो गेट दिखाई दे रहा है। अ इधर साइड में चबूतरा बना हुआ है वहाँ पे कुछ पेड़ पौधे दिखाई --

पिला कलर में है और इधर भी कुछ गेंदे के फुल दिखाई दे रहे है जो रेड --